और गेट बड़ा जैसन है और आगे मे दो पोस्टर लगाया गया है एक बड़ा है और एक छोटा है।